ऑटो हैं और ट्रक दिखाई दे रहे हैं | कुछ लोग सड़क पे खड़े हुए हैं समान लेकर जैसे किसी बस का या किसी का गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं।

अलग अलग तरह की अ साइकिलिंग वगेरा करने के लिए इसमें सुविधा सब है शीशे लगे हुये हैं।

बहुत सारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं मोटर साइकिल स्कूटर हैं गाड़ियाँ हैं पेड़ हैं और पुलिस के बेरियर इसमें लगे हुए हैं बिजली का खम्भे अ खम्भा है।

ये किसी अस्पताल का द्रश्य है। बाहर लोग खड़े है और इमरजेंसी बोर्ड दिखाया गया है। यहाँ पर --